कलर क्रीम कलर देखने को मिल रहा है। लाइटिंग लगी हुई है पंखे लगे हुए हैं और कुछ भगवानजी की फोटोस यहाँ दिख रही है एल.इ.डी. दिख रही है निचे एक वाइट कलर की टाइल्स दिख रही है।

यहाँ पे एक रेलवे ब्रिज दिखाई दे रहा है और नीचे पानी दिखाया गया है नदी का और नजिक आगे आसमान दिखाई दे रहा है जोकि नीले कलर का है और ब्रिज पे से --

यहाँ पंखे लगे हैं। लाईट लगा हुआ है और पीछे बैकग्राउंड में मैरून कलर का एक पंखा परदा लगा हुआ है। ऊपर सीलिंग व्हाइट --

यहाँ गवर्मेंट का एक बहुत बड़ा कार्यालय दिखने को मिल रहा है जिसका कलर ओरेंज है।

सबसे बड़ी बिल्डिंग है। नीचे टाईल्स लगी हुई है। ऊपर नीला आसमान दिख रहा है। कुछ सफ़ेद बादल दिख रहे हैं। यहाँ बिल्डिंग का कलर सफ़ेद गेरुआ और नीले कलर के कांच लगे हुए हैं इसमें और ग्रीन पेड़ दिख रहे हैं।

ये एक जनरल स्टोर की शॉप है। दुकान है। काफी सारा सामान बिक रहा है जनरल स्टोर का।

यह एक मंदिर के सामने मार्केट लगा हुआ है। मंदिर जो है यल्लो कलर का दिख रहा है और सामने।